लोग देख सकते हैं एक लड़की लाइट की मदद से अपना काम कर रही हैअब आप लोग देख सकते हैं ये पता नहीं क्या बना रही--

और इन देहली का ही एक कोई छोटा इलाका है जिसमें बिल्डिंग्स वगैरह भी थोड़ी बहुत छोटी-छोटी खड़ी हुई है छोटे-मोटे घर हैं।

और देखिए कितनी प्यारी शॉप बनाई गई है दरख के नीचे साय तले पानी की शॉप शायद--

समझ रहे हैं ये किसी कंपनी में दिल्ली की कोई मशहूर कंपनी है उसमें यह काम कर --

देखिए मां-बाप अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं उनकी पिक्चर्स ले रहे हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं।

ये एक ए_टी_एम कार्ड का एरिया है जिसमें से आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं डलवा सकते हैं मशहूर देहली --

होटल जागीर पैलेस ठीक है और दूसरा इन्होंने क्या रखा हैहोटल जागीर पैलेस --